एक स्कूल है जहाँ पर एक्सिबिशन जैसा लग रहा है।

कुछ क्रीम कलर की लाइट्स हैंकुछ पिंक कलर की लाइट्स हैंकुछ रेड कलर की लाइट्स है।

एक फायर एक्सटिंग्विशर है।

इसमें बहोत सारी कार रखी हुई हैं। उधर चेयर्स भी रखी हुई हैं ब्लैक कलर की। ए सी लगा हुवा है।